ये एक वाटरपार्क की तस्वीर दिखाई दे रही है यहाँ पर--

ये एक धर्मशाला के बाहर की तस्वीर दिखाई दे रही हैं।

ये एक फ्रूट्स और सब्जी की दुकानें दिखाई दे रही है ये एक सब्जी मंडी की तस्वीर ली गयी है यहां पर --

फलों की दुकान है और सब्जियों की भी दुकान दिखाई दे रही है यहां पर बहोत सारे --

लोग हैं जो कुछ फलों की दुकान पर हैं तो कुछ सब्जियों की दुकान पर खड़े हुए हैं।

यही टेबिल में बहोत सारी फाइल्स रखी हुई दिखाई दे रही है और एक लैपटॉप है जो वही रखा हुआ है।

बाहर की तस्वीर है जहां पर रोड दिखाई दे रही है यहां पर दो बिल्डिंगे में बनी हुई भी दिखाई दे रही है।

जिसमें अलग अलग किताबें रखी हुई है और एक टेबल पर भी बहुत सारी किताबें रखी हुई है।

जहां पर कुछ छतरियां बनी हुई दिखाई दे रही है और कार की साइड मे एक बड़ा सा पिलर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

इंतजार में बैठे हुए हैं यहां दो महिलाएं हैं जो बैठी हुई आपस में बातचीत करती हुईं दिखाई दे रही हैं।